और नीचे तालाब है जो पानी आया हुआ है। बारिश के दिन नजर आ रहे है पुल है।

गर्ल्स भी है बॉयज भी है यहां पे ले गर्ल्स के कपड़े हैं नीले हरे और लाल कलर का स्कर्ट्स सेम है।

जो सामान बेचने को काम आता है गाड़ी में जो आइसक्रीम वगैरा उस तरह की गाड़ी है।

पानी पीने के लिए हाथ धोने के लिए रखा हुआ है।

यहां पे है नोटबुक कलर स्केच कैमल और पेन ब्रश --

टूल है जो यहां पे लोग बैठ के खा रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं और यहां पे बा--

चक्रा बोलकर और यहां पे भी चक्रा भी है।

यहां पे लोग बैठे हुए हैं टू व्हीलर पे कुर्सियां हैं लाल कलर की--

यहां पे बैट भी रखा है नीचे ब--

यहां पर होटल नजर आ रहा है जो यहां पर किचन --

चिकन टिक्का लिखा है सीक कबाब लिखा है।

म कीमत लिखी हुई है अंदर है गैस है और टेबल है बाहर--

रखा गया है और यहां पे दीवाल भी हैं।

यहां पे परदा लगाया हुआ है। स्विच बोर्ड है एक वायर है और यहां पर--

गोल टमाटर है जो जवारी टमाटर कहते हैं।

यहां पे योगा कर रहे है लोग आकर जो एक ही पोजीशन में वो लोग--

और यहां पे है बिल्डिंग व्हाइट कलर की ब्लू कलर की--

यहां पे दुकान है जो यहां पे लेडिस के एक्सेसरीज़ है जो यहां पे बेल्ट है।

वो यहां पे झुमके हैं पंद्रह रुपए लिखा हुआ है जो यहां पे लेडिस है दो जो ले रहे है।

यहां पे और है बिल्डिंग जो यहां पे बहुत सारे दिख रहे है।

सामने बिल्डिंग बन रही है और यहां पे--

यहां पे बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग डबल ट्रिपल मंजिले की बिल्डिंग है और यहां पे कलर ब्लू हैं और यहां पे है।

येलो है ब्लू येलो ऐसे कलर दिया गया है।

गाड़ियों को युज होते हैं जो ट्रक है।

बैठा हुआ ठहरा हुआ है जो काम कर रहा है यहां पे दूसरे भी टायर है।

यहां पर घर है जो एक टेबल है कुर्सी है।

यहां पे बल्ब ने रेड येलो जो यहां पे डका डेकोरेट किया--